और ऐसा लगता है कि किसी नमकीन सेंटर का यह दृश्य है।

काफी सारी महिलाएं एक समूह में बैठी हुईं हैं जो महिलाये सभी लोग बैठी हुईं हैं वे सभी चेयर पर बैठी हुई --

पिछला हिस्सा यानी जो डा डाला बोलते हैं वो डाला टंकीनुमा आकृति में बनी हुई है।

इसी फोटो को घिचवाने के लिए अपने हाथों को गालों पर टिकायें हुए फोटो का पोज दे रहे हैं और फोटो को लेने की कोशिश करवा रहा है किसी मोबाइल के द्वारा--

यह संध्या काल का दृश्य लिया गया है काफी दूर से लिया गया है।

किसी बॉडी बिल्डर जिम का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा--

किसी नदी का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

जो फर्श बना हुआ है वो बिल्कुल रेड और व्हाइट कलर के ईंटों से बना हुआ है।

एक इंडियन लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है।

दिवाल के ऊपर यलो कलर का एक बोर्ड बना हुआ हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।